बट इसके पास में फ्लावर्स के कुछ बुकेस रखे हुए हैं।

उसके अलावा कुछ लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं।

ये साथ में हम इसे एक लाइब्रेरी भी मान सकते हैं जिसमें कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं सबका यहां अलग अलग--

जहां पर घेवर वगैरा मिठाई मिलती है।